यहां पर सामने एक बड़ासा हॉस्पिटल दिख रहा है और--

हॉस्पिटल के बाहर कांटेक्ट नंबर --

वाइट कलर के कॉस्ट्यूम --

कप टंगे हुए हैं हैंग हैं रोड --

बहुत अलग-अलग कलर के कप हैं कुछ कप नीचे--

टंगे हुए हैं और एक बड़ा सा--

सामने रैक है बहोत सारे और रैक पे शैंपू --

सबून और बहुत सारे बॉक्स रखे--

यहां पर सामने एक बड़ी सी--

रैक बना हुआ है। लकड़ी का रैक है और रैक में--

आर्टिफिशियल फ्लावर से सजा रहे हैं।

सैनिटाइजर की मशीन रखी हैऔर रैक में--